यहां पर एक ऑटो खड़ा हुआ है। उसके बगल में एक और ऑटो खड़ा है। बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में कुछ ठेले लगे हुए हैं।